और यहॉँ पर कर्मचारी काम कर रहै। एक कर्मचारी घड़ा लेकर पानी में मसाला बना रहा है और यहा पर सीमेंट भी रखा हुआ है और यहाँ पर ईंटे भी पड़ी --

और यह से बना गया है यहाँ पर बहुत सारे पादरी भी बैठे हुए हैं।

इस फोटो में हम देख रहे हैं यह एक मेडिकल स्टोर का फोटो है और वह मेडिकल कि बड़ा है।